डॉक्टर भारती बत्रा इस पे जरुरत अच्छा है लेकिन क्लर्क का डॉन है इस हॉस्पिटल का --

डेंटिंग पेंटिंग करके अच्छा बनाया गया है देखने में काफी अभी अच्छा लग रहा है। ये का शोरूम --

जिम सेंटर है। भाईसाब जिम कर रहे है। जिम जिम में--

शीशा लगा हुआ बिल्डिंग में बिल्डिंग के बाहर --

जिम में भाई साहब जिम कर रहे है बॉडी बहुत फिटनेश दिख रहा है भाई भाई साहब का।

साउंड भी बज रहा होगा।

खड़े तो इस साईड है लेकिन देख पीछे रहे है ये भाईसाहब पीछे से ही खड़े है ।

ये तस्‍वीर शादी समारोह का है।

उधर कुछ स्‍कूल कॉलेज जैसा दिख रहा है हमको जो स्‍पष्‍ट नहीं दिखाई दे रहा --

गाड़ी एक लगा हुआ है जो कि पुराना है।

स्‍टेशन काफ़ी पुराना है काफी दिनों से इसपें रंग बगैरह नहीं किया गया है इसलिए पुराना दिख रहा है।